बहोत सारे बाइक भी खड़े हैं।

रखे हुए है जोकि काफी सुंदर लग--

इस पिक्चर में हम ये देख सकते हैं कि--

बाबा फर्नीचर का दुकान है।

बड़ी मात्रा में उदय ऑटो इलेक्ट्रॉनिक --

जिसके बगल में एक ढाबा--

जोकि बहोत सुंदर लग रहा है।